इस स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है अंदर काफी बड़ा एरिया है कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई देने फिलहाल स्कूल का गेट बंद नज़र आ रहा है।

दीवाल में दोनों तरफ दो-दो बड़े-बड़े शीशे लगे हुए हैं और शीशो के सामने बड़ी-बड़ी मशीने रखी हुई है जो की लोहे की बनी हुई है।

यहाँ पर एक जिम दिखाई दे रहा है जिस मे बीचों बीच एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है इस मिरर के दोनों तरफ काफी सारी मशीने रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

किसी जगह पर किसी खेत के बीचो-बीच पे एक छोटा सा घर बना हुआ है जिस पर फिलाल प्लास्टर नहीं दिख रहा है घर के सामने बांसों को लगा कर बाड़ी बनाई गई है इस बाड़ी के अंदर कुछ क्यारिया बनी हुई है जिस पर कुछ पौधे लगे हुए है।